यह एक स्कूल है बी.डी.डबल्यू.आर.एल.डी स्कूल जिसमें --

यह जामताड़ा का यामाहा का शोरूम हैं।

गाड़ी में बहुत गंदगी है इसलिए गाड़ी को वॉशिंग किया जा रहा है।